एक ऑडिटोरीयम में एक शॉप लगी हुई है--

ये एक ब्रिज -का-- नीचे का हिस्सा है यहाँ पे एक एक -उम दुकान मालिक अपना सलून लेके बैठे हुए है।